meet the gimp के spoken tutorial में आपका स्वागत है
आज मैं selective sharpening selective sharpening के बारे में सिखाना चाहती हूँ
camera के बाहर प्रत्येक image को sharpen करने की आवश्यकता है क्योंकि वे सुस्पष्ट नहीं होती हैं विशेष रूप से अगर आप अपरिष्कृत raw images लेते हैं और camera के processor को image को शॉर्प करने की अनुमति नहीं देते हैं
लेकिन जब आप इसे gimp प्रयोग करके अपने आप करते हैं तो आप sharpening को नियंत्रित कर सकते हैं और आज के tutorial में मैं दिखाऊंगी कि यह कैसे करते हैं
अब यहाँ इस image पर एक नज़र डालते हैं
इस image में background में तार की जाली एक बहुत बड़ा बिना शार्प किया हुआ क्षेत्र है और यहाँ यह फूल थोड़ा सा शार्प किया हुआ है
अतः मैं इस फूल को थोड़ा ज़्यादा sharpen करना चाहती हूँ और background को ऐसे ही रखना चाहती हूँ
लेकिन पहले मैं दिखाउंगी कि मैं background को sharpen क्यों नहीं करना चाहती
अभी यह शार्प नहीं है और थोड़ा s शार्प करना नुकसान नहीं पहुंचाता है
अतः मैं tool bar में filters पर क्लिक करके sharpen tool चुनती हूँ और sharpness slider को ऊपर खींचती हूँ और आप देख सकते हैं कि background की मौलिकता नष्ट हो जाती है
लेकिन अगर आप यहाँ देखते हैं और मैं sharpen tool को यहाँ लाती हूँ और जब मैं slider को उच्चतम value तक खींचती हूँ तो picture लुप्त हो जाती है
अतः शार्प न किये हुए क्षेत्र या so क्षेत्र जो रंगों से भरे हैं और बिना विवरण के हैं को शार्प करना image को ख़राब करता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि image में so रंग जिन्हे शार्प करने की ज़रुरत नहीं है so भी शार्प हो जाते हैं
अतः मैं आपको चयन करके sharpening करने की विधि बताउंगी जो image को ख़राब नहीं करती है
selective sharpening करने के लिए मैं layers के साथ कार्य करुँगी
इस समय मैं background layer की एक copy बनाउंगी और इसे sharpen कहूँगी
add मैं sharpen की हुई layer पर एक layer mask layer mask जोड़ती हूँ और मैं layer mask layer mask में gray scale copy of the layer चुनती हूँ और add विकल्प पर click करती हूँ और आप देखते हैं कि कोई बदलाव नहीं हुए हैं क्योंकि layer mode layer mode normal normal है
लेकिन जब मैं मूल background layer को deselect करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि image के केवल चमकदार भाग ही दिखते हैं
और अगर आपको याद हो कि layer में सफ़ेद चमकदार भागों को दिखाता है और काला छुपाता है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ज़्यादातर सारे layer mask dark हैं इसलिए ये छुपे हुए हैं और यहाँ केवल चमकदार भाग ही दिखते हैं
अब जब मैं layer mask पर sharpening algorithm sharpening algorithm प्रयोग करती हूँ तो केवल फूल ही शार्पन किया जायेगा
और मैं पत्ती वाले भाग को भी sharpen करना चाहती हूँ
और शार्प की हुई image में मैं फूल में सफ़ेद क्षेत्रों को नहीं रखना चाहती हूँ और मैं केवल बारीक़ चीज़ें चाहती हूँ
ऐसा करने के लिए मैं दूसरा filter प्रयोग करुँगी और यह edge detect है
यह algorithm है जो image में चमकदार और धुंधले भागों के बीच किनारों को देखने में मदद करता है और सफ़ेद line बनाकर उन्हें और स्पष्ट बनाता है
आप यहाँ इन विकल्पों को छोड़ सकते हैं जैसे ये हैं क्योंकि इन अल्गोरीदमों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन मैं amount की value को 4 तक बढ़ाती you और प्रीव्यू में देखती you
आप यहाँ देख सकते हैं कि background में थोड़ी see संरचना दिखती है और चमकदार भाग में मोटी सफ़ेद लाइनें
मैं ok पर click करती हूँ और algorithm द्वारा इसको image पर लागू करने का इंतज़ार करती हूँ
यह कार्य करता है और अब मुझे सारे किनारों पर सफ़ेद painting प्राप्त होती है
मैं 1 दबाकर image में zoom करती हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि अब सारे चमकदार भागों पर सफ़ेद border और सफ़ेद line है और बाकि के सारे क्षेत्र लगभग काले हैं
जब मैं layer mask और background layer को switch of करती हूँ तो आप सिर्फ फूल का किनारा देख सकते हैं यानी चमकदार भाग दिखता है
अब मैं background के रंगों और फूल के रंग को प्रभावित किये बिना फूल के किनारे को sharpen कर सकती हूँ
लेकिन यह एक अजीब प्रभाव देगा जैसे कि मटमैले background में sharp line
और उससे बचने के लिए मैं blur नामक इस layer पर एक अन्य filter प्रयोग करती हूँ
मैं layer mask चुनती हूँ और इस सफ़ेद line को थोड़ा कम करने के लिए gaussian blur प्रयोग करती हूँ और मैं horizontal blur radius की value को थोड़ा सा बढ़ाती हूँ मानिये 8 तक और ok पर click करती हूँ
filter को पूरा होने के लिए इंतज़ार करें और अब आप देख सकते हैं कि फूल का किनारा थोड़ा ज़्यादा मुलायम हो गया है और मुझे लगता है कि image में मुझे थोड़े अधिक contrast की ज़रुरत है
अतः मैं curves प्राप्त करने के लिए curve tool चुनती हूँ और image पर click करती हूँ और dark को ज़्यादा dark करने के लिए मैं curves को थोड़ा नीचे खींचती हूँ और सफ़ेद को ज़्यादा सफ़ेद करने के लिए चमकदार भाग को थोड़ा ऊपर खींचती हूँ
ok पर click करें और मेरे पास मोटी सफ़ेद लाइनें हैं जिनको sharpening करने की ज़रुरत है और काला भाग है जहाँ sharpening नहीं की जानी चाहिए
मैं काले भाग पर कार्य कर सकती थी लेकिन यह कोई प्रभाव नहीं दिखायेगा
अब मैं यहाँ layer mask को अक्षम करती हूँ और पूरी image को देखने के लिए shift + ctrl + e दबाती हूँ
अब आप जानते हैं पूरी image को देखने के लिए shift + ctrl + e
जब मैं मूल background layer को अक्षम करती हूँ तो मुझे image का लगभग कुछ नहीं दिखता है
अब मैं आपको समझाती हूँ कि white layer fill type के साथ एक नयी layer जोड़ कर क्या होता है और ok दबाएं
अब आप उन क्षेत्रों को देखते हैं जिन्हें शार्पन किये जाने की ज़रुरत है
अब इस image को sharpen करते हैं tool bar में मैं filters पर click करती हूँ और enhance और sharpen चुनती हूँ
फूल के उस भाग पर जाएँ जहाँ sharpening की जानी है और इसे देखें sharpen की हुई layer चयनित है क्योंकि सफ़ेद layer में sharpen करने के लिए कुछ भी नहीं है
अतः sharpen layer चुनें फिर filter और reshow sharpen और यहाँ आप pull को देखते हैं और sharpness slider को तब तक ऊपर खींच सकती हूँ जब तक एक अच्छी sharpen की हुई image प्राप्त न हो जाये
और फिर ok पर क्लिक करें और algorithm को कार्य करने तक इंतज़ार करें
यह कार्य करता है
और अब आप देख सकते हैं कि line में कहीं ज़्यादा स्पष्टता है
अब इस सफ़ेद layer को हटाते हैं और पूरी image को देखते हैं
sharpen की हुई layer को switch off करते हैं लेकिन इस magnification में कोई बदलाव नहीं दिखते हैं
अतः मैं image में zoom करती हूँ
और मुझे लगता है कि आपको प्रभाव अच्छी तरह से देखने चाहिए
जब मैं sharpen layer को on करती हूँ आप sharpen की हुई image देखते हैं और जब मैं इसे off करती हूँ तो image sharpen की हुई नहीं होती है
opacity slider की मदद से मैं प्रभाव की मात्रा को नियंत्रित कर सकती हूँ
अब मैं background को जाँचती हूँ और आप check सकते हैं कि मैंने इसे कोई क्षति नहीं पहुंचाई है
अब मैं कुछ अच्छी tuning करुँगी
और मैं image में कुछ ज़्यादा ही शार्प किये हुए क्षेत्रों और अच्छी तरह से शार्प न किये हुए क्षेत्रों को देखती हूँ
फूल और background के बीच का border बिना किसी प्रभाव के अच्छी तरह से शार्प किया गया है
लेकिन जब मैं फूल पर जाती हूँ यह भाग कुछ artificial लगता है और यहाँ यह भाग निश्चित रूप से अधिक शार्प हो गया है
और फूल की यह कली उचित रूप से sharp नहीं हुई है क्योंकि edge detect algorithm को किनारे नहीं मिले
लेकिन जैसा आप देख सकते हैं कि वहां कुछ किनारे हैं और मुझे levels tool या curves tool की मदद से इस भाग को थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट बनाना चाहिए था
आपके work flow में sharpening हमेशा आखिरी step होनी चाहिए
ठीक है इस पर मैं बाद में आऊँगी
अब मुझे इस भाग की sharpness को कम करना है
यह आसान है सिर्फ निश्चित कर लें कि आपने sharpen की हुई layer चुनी है brush tool चुनें
soft edges यानी मुलायम किनारों वाला brush चुनें और scale slider खींच कर इस काम के लिए brush को उचित आकर तक बड़ा लें और अब काला रंग चुनें क्योंकि आपको पता है कि काला छुपाता है और सफ़ेद दिखाता है
और अपने brush के opacity slider को खींचें मानिये 20% तक
जब मैं brush को यहाँ move करती हूँ और painting शुरू करती हूँ तो आप देख सकते हैं sharpening कम की गयी है
मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वास्तव में layer mask की मदद से क्या होता है
मैं layer mask on करती हूँ और जब मैं सफ़ेद भाग के ऊपर paint करती हूँ तो यह darker हो जाता है
लेकिन जब मैं layer mask को of करती हूँ तो मैं image को देख सकती हूँ और अपने कार्य का परिणाम देख सकती हूँ
मैं विवरण बाद में देखूँगी
अब मुझे यहाँ इस भाग में ज़्यादा sharpening करनी है
मैं सिर्फ x की से रंगों को switch करती और painting शुरू करती हूँ
और जैसा आप देख सकते हैं यह भाग ज़्यादा sharper और ज़्यादा darker हो जाता है
और मुझे लगता है यह अच्छा है और अपना काम जांचने के लिए मैं layer mask को switch on करती हूँ और आप वो सफ़ेद भाग check सकते हैं जो मैंने painted किया है और मैंने यह थोड़ा ज़्यादा किया है
अतः मैं layer पर वापस जाती हूँ और x की दबाकर रंग को बदलती हूँ और उस कार्य को redo करती हूँ जो मैंने किया है
हम यहाँ layers के साथ काम कर रहे हैं इसलिए data खोने का कोई खतरा नहीं है
एक चीज़ जो मैं अभी नष्ट कर सकती हूँ वो हैं edge यानी किनारों का data जो filter द्वारा बनाया गया है
लेकिन यह आसानी से रीडू किया जा सकता है
यहाँ मैंने फूल के किनारे पर ज़ूम इन किया है जहाँ sharpening की जानी है
और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ किनारा शार्प हो गया है
sharpening इन दो रंगों के बीच के border के गहरे और चमकदार भागों के बीच की चमकदार और गहरी line प्राप्त करने में मदद करता है
गहरे भाग का किनारा ज़्यादा गहरा और चमकदार भाग का किनारा ज़्यादा चमकदार है
और mask प्रयोग करके आप प्रभाव को केवल उस क्षेत्र तक रख सकते हैं जहाँ आप इसे चाहते हैं
अब मैं आपको sharpening के बारे अधिक विस्तृत संसाधन के बारे में बताती हूँ
chris markwa की broadcast की site tips from the top floor dot com पर जाएँ और बायीं तरफ आपको कहीं photoshop corner मिलेगा
और उनके पास photoshop के बारे में बहुत से broadcast हैं जो लगभग gimp के लिए भी उपयोगी हैं और वह broadcast में कहता है कि उसने चीज़ों को लिखने में बहुत प्रयास किया है और इसकी कुछ picture भी बनायीं हैं और मैं वहां से कुछ material लूँगी अतः मैं सीधे यहाँ source पर point कर सकती he
और यहाँ आप sharpening इफ़ेक्ट के बारे में देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने इस tutorial में चर्चा की
वह विस्तार में बिना शार्प किया हुआ mask और halos से बचने की प्रक्रिया को भी covers करता है
और image को sharpen करने के लिए बहुत सी अलगअलग techniques दिखाता है
लेकिन वो जो मैंने आपको दिखाया यहाँ इस site पर नहीं है
और वैसे जब आप इस site पर हैं तो देखें कि क्या कार्यशाला देखना सीखने के लिए कुछ और जगहें भी हैं
इस सप्ताह के लिए this इतना ही था अगर आप टिप्पणी भेजना चाहते हैं तो कृपया info @meetthegimp org पर लिखें
अधिक जानकारी
और मैं आपसे सुन्ना चाहती हूँ
मुझे बताये कि आपको क्या अच्छा लगा मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ भविष्य में आप क्या देखना चाहते हैं
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती you धन्यवाद